की शादी के हॉले लगत बा कुल कैमरामैन फोटो खींचत हवन कुल लाइट वाइट जलल ह फिर उपर फूल वूल से कुल सजल बा नीक नीक --

देखत है कि दुगो मिस्त्री ऊपर एकदम हथोड़ा लेके ठोकत हैन ऊपर पेचकस की मदद से।

ऊपर देखत हईं कि टोपी भी लगायीं हं पीला रंग के और जैकेटवों पहैनल हं संतरा कलर के| फिर लकड़ी उकड़ी से कुछो बनतबा लगत ह बिल्डिंग उलडिंग के कोनो काम वाम चलत बा।

हमके एच.डी.एफ.सी. बैंक के कुल का दिखत बा ऊपर नीचे बोड़वा पे लिखल बा वन मंथ इंट्रस्ट फ्री और फिर नीचे स्कूटी वॉस्कूटि मोटरसाइकिल भी लउकत ह।

इ त हम देखत हइन की एको औरत एको आदमी ये माइक पकड़ के खड़ खड़ा हैंन फिर निचे कार्पेटो बिछल बा। नि --

अ दूगो अदमी खनत हैन एको आदमी देखत हैन और कुल सामने पेड़ वेड भी लउकत ह। कुल फूल वूल भी ऊपर लगल ह। कुल चारो तरफ हरियाली हौ।

लाइटिंग वाइटिंग लउकत बा। हमके ऊपर पंखा उन्खा भी कुल लगल ह कुल चारों तरफ कितना भीड़ बा।

ई त देखत हई की इहों सेलोने लागत बा। एखों लईका के एकदम एकदम डिजाइन मे हेयरकट कटल ह।

की ऊपर टेबल वा पे कुल लाइन से बल्टी कुल भगोना ओगोना लोकत बा कुल कलछुल से निकाल निकाल के कुल आदमी के देत हन गुल आदमी खात हन प्लेट पकड़ी के।